इस दृश्य के अंदर एक मिष्ठान भंडार दुकान है जिसके अंदर एक बुड्ढा सा आदमी खड़ा है।

मंडी है और इसपे कुछ--